ट्रेडर्स है जहाँ पर एक टोटो खड़ी की गई एक आदमी हाथ में चाबी लेकर एक लेडीज़ को --

सामने हरे-भरे बड़े-बड़े पेड़-पौधे है और मैदान है।

बैठ कर मोबाइल देखने का आदमी खड़ा है | इस के कंधे पे लाल कलर का बैग है |

उम्म्म स्मार्ट गार्ड लगा हुआ है।

तस्वीर बनाई है देखने में --